यहां पर मुझे एक एंबुलेंस दिखाई दे रही है।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

यहां पर मुझे दो औरतें दिखाई दे रही हैं।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

यहां पर मुझे कुछ घर दिखाई दे रहे हैं।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

यहां पर मुझे चार ट्रक दिखाई दे रहे हैं।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

यहां पर मुझे एक कैफे दिखाई दे रहा है।